फ्रिज है और फ्रिज के अंदर काफी सारे वाइट कलर के बॉटल्स है जिसका ढक्कन भी वाइट कलर का ही है।

काफी सारे नीचे फूल के पौधे भी हैं जो कि एक बुके के रूप में लगा हुआ है।

बगल में एक नीले रंग का बोर्ड भी है जिसमें वाइट अक्षरों से कुछ लिखी हुई है।